सामने की साइड पे एक काउंटर बना हुआ है जो सफेद और गठे रंग की है एक आदमी खरा हुआ है बैठा हुआ है फ़ोन से बात कर रहा है और मास्क लगया हुआ है।

वीडियो सूट के लिए कैमरा दिखाई दे रहा है मुझे एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा हुआ है।

उसने कार में तवर लगाया हुआ है उसका पहिया निकाल दिया है । लाइट भी निकाल दी है । कार खड़ी हुई है सफेद कलर की है ।

एक लड़का है जिसने ब्लू कलर की टी-शर्ट पैहनी हुई है | हाथ में घड़ी पैहनी हुई है ।